कई लड़के भी हैं बच्चे भी हैं और इधर उधर औरत भी हैं लड़कियां भी हैं।

इमेजिनेशनरी मशीन और कई भी मशीनें रखी हुई हैं।

घर पूरा वाइट कलर से पुता हुआ है घर में भी लाइटें जल रही हैं।